हमें इस तस्वीर में एक कमरा दिखाया जा रहा है जहां एक प्यारा सा भगवान का मूर्ति है।

हमें इस तस्वीर में एक गार्डन दिख रहा है।

गार्डन में छोटा-छोटा घास भी नजर आ रहा है।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

वहीं उसके बाहर कुछ गाड़ियां लगी हुई है जो कि काले रंग की है।

घर में लाइट कुछ इस प्रकार लगाया गया है कि घर का हर एक कोना रोशनी में जगमगा उठा है।

कोई गाड़ी का रंग उजला और कोई गाड़ी का रंग काला है।